और यहां पर बहोत से बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

और यहां पे कुछ छोटी मशीनें कुछ बड़ी मशीनें --

आस पास पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई है।

रेस्टोरेंट अभी नया खुला हुआ है और इसमें बहुत सारी चेयरे भी पड़ी हुई है।

नदी में नाव वो भी दो दिखाई पड़ रही है और आसपास नदी का पानी बहोत गंदा है।